यहाँ पे लोग आते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तार है।

बॉर्डर है। बहोत बढ़िया लग रहा हैं। बहोत अच्छा लग रहा है और ये खंबा है बादल है।

सलाम कर रहे हैं अल्लाह के आगे और मस्जिद का गेट लगा हुआ है।